ये बच्चों के खेलने के लिए है और कुछ छोटे बच्चे उसमे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

चित्र किसी बहोत बड़े रेलवे स्टेशन का है जोकि कुछ सारी पटरी सारी पटरियां दिखाई दे रही हैं और ऊपर कुछ बिजली की तारे भी दिखाई दे रही हैं और आसमान दिखाई दे रहा है।

यह चित्र किसी पेट्रोल पंप का है जोकि रात का समय दिखाई दे रहा है।

यह चित्र किसी पहाड़ी क्षेत्र का है जो कि सामने पहाड़ी क्षेत्र में एक सड़क दिखाई दे रही है इस पर कुछ गाडी इधर से उधर जा रही है और दूसरी तरफ किनारे पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ सफ़ेद रंग बादल भी दिखाई दे रहे हैं। एक पहाड़ी दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर किसी पहाड़ी एरिये में बनी हुई सड़क का है| सामने सड़क के उस पार आदमी बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं |

किसी फल फ्रूट बेचने वाले की दुकान का है जो कि सामने बोहत तरह के फल फ्रूट दिखाई दे रहे हैं जैसे की चु --

और कुछ आदमी जो की शेड के नीचे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे हैं।

यह चित्र किसी मंदिर का है जोकि सामने बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है।

और रेसटुरेंट मे बहोत सारे कमरे दिखाई दे रहे है और लाइटे दिखती दिखाई दे रही है और बहुत कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।